ये डिलाइट बेकरी है इसके बाहर में एक बाइक है और एक एक्टिवा है साइड में और एक एक्टिवा है।

ये एक मछली बाजार है यहां पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं और कुछ छोटी मछियां हैं।

और बाजार बाँस का बना हुआ है और उधर में पास घर है येलो कलर का कलर किया--

डेकोरेशन थोड़ा सा पिंक में है पर्पल में है येलो में है।

आसपास में बहोत सारी मा मिट्टी भी है थोड़ी थोड़ी।

ये एक कैफे है इस कैफे के अंदर में बहुत सारी टेबल और चेयर लगी हुई है।

बाहर में आलू प्याज लगे हुए हैं और मछलियां भी है।

ये एक स्टेट बैंक है इसके सामने में एक टेंपो लगा हुआ है ब्लू कलर का और उसके सामने दो आदमी हैं।

ये एक मंदिर है इस मंदिर के ऊपर में गोल्डेन कलर का एक मूर्ति भी बना हुआ है।

ये एक बहुत बड़ा पेंडल बना हुआ है वाइट कलर के कपड़ा लगा हुआ है।

कुछ सूअर का कलर व्हाइट में है और ब्लैक में है और कुछ का पूरा ब्लैक में है।

ब्ल्यू कलर की टोकरी है जिसके अंदर में बहोत सारे आलू है।

घर का दीवार का कलर वाइट में और ब्लू में है।

ये एक गैरेज है इसके अंदर में बाइक है ब्लैक कलर की।

वहां पे बहुत सारे लोग हैं कुछ लेडिज है कुछ जेन्ट्स है।